जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे वॉल दिख रही है पीछे ग्रीन कलर पेंट करी हुई जिसके ऊपर कुछ रखा हुआ है।

देख सकता हूँ कि मुझे इमेज में दिखाई दे रहा हैं आ-सबसे पीछे आ देखा जाए तो आ वाइट कलर की बिल्डिंग हैं।